आईना लगा हुआ है कैंची पकड़ा है।

यहाँ पे कुछ मशीन --

यहाँ पे अलाहाबाद ब्रांच लिखा हुआ है यहाँ एक आदमी जमीन में बैठा है और एक आदमी है जो साइकिल में है।

फलदार छायादार बड़े-बड़े पेड़ हैं।